दो लड़के खड़े हो गए हैं जो कि एक लड़के ने जेब में हाथ डाल के रखा हुआ है टीशर्ट और जींस पहन और रखा हुआ है जूते भी पहन रखे हुए है।

यहां पे एक लड़का बैठा हुआ है जिसने अपने हाथों में ग्लव्स पहन के रखा हुआ है वो कुछ काम कर रहा है और एक हाथ में कुछ पेन टाइप का --

हरे कलर का पहना कुछ पकड़ के रखा हुआ है इसने ब्लैक कलर की टीशर्ट पहन रखी हुई है और यहां के--

इस तरह से मुझे कुछ लड़कियां जाती हुई नजर आ रही है जिन्होंने अपने पीछे--

जो कि स्टेट बैंक एटीएम के पास में खड़े हो गए हैं यहां पे--

यहां मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है जहां पे कुछ तीन लड़कियां भी जाती हुई नजर आ रही हैं जिन्होंने अपने पीठ पर--

अं एक टेबल पे रखा हुआ है।

और उसके बगल से कुछ एक मशीन है कुछ थोड़ा सा नापतोल का भी सामान रखा हुआ है उस लड़की ने अपनी कुर्ती और गले में--

और एक मेन गेट भी दिख रहा है जो की खुला हुआ है। इसके बगल से एक--

यहां मुझे सड़क पर बहुत सारी बिल्डिंगे बिल्डिंगे नजर आ रही है जो कि बहुत सारी अलग-अलग तरीके की बिल्डिंगें हैं।

एक डिजाइन बनाया गया है छत का और कुछ बिल्डिंग का--

सभी लाइटें लगी हुई है यहां पे कांच का--

कुछ केबिन भी दिखाई दे रहे जोकि कांच से बने हु कांच के दरवाजे है जिसके--

लोना है इन मोटरसाइकिल लोना बोलते हैं और ऐसा ऐसे ही लोना का शोरूम है यहां पे मुझे केबिन दिखाई दे रहा है वहां पे--

यहां मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने अपने सिर पे गमछा रखा हुआ है और टी शर्ट --

बगल से और भी बहुत सारी बैनर लगी हुई है।

सब इस डब्बों में सभी भगौना में जमाया गया हुआ है और कुछ लड़के--

यहां मुझे तो बहुत सारे सचिन दिखाई दे रहे हैं जो खड़े हो गए हैं जिन्होंने अपने हाथों में लौटा--

कुछ अह नहाते हुए भी दो लड़के मुझे दिखाई दे रहे है।

मुझे यहां पर ये दुकान दिखाई दे रही है जहां पे जिसके अंदर --

मुझे एक छोटा सा हॉल दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी ऑफिस का हॉल है और यहां पे एक लड़की जो कि खुले बालों में है जिसने--

अपने पीछे बैग टांग के रखे हुए हैं कुछ इनके किसी ने अपने अपने हाथ में कुछ कुछ पकड़ के रखा हुआ है यहां मुझे --

स्कूटर कुछ मोटरसाइकिलें कुछ टेंपो भी न दिखाई दे रहे एक मोटरसाइकिल भी बच्चों लड़का बैठा हुआ है जिसने--